ऊपर कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

और एक बड़ा बोर्ड भी लगा है।

इस पर गुरु विश्वस्थी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

कुछ व्यक्ति भी बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में कुछ सोफे पड़े दिखाई दे रहे हैं।

और दोनों तरफ दो कुंडे भी लगे हुए हैं।

नीचे शीशी भी गिरी हुई--

इस फोटो में बहुत सारे आदमी अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक दीवाल पर एक बलब भी लगा हुआ है।

बहुत सारे पत्थरों के बीच में पानी भी पड़ा हुआ--

सामने एक टेबल भी रखा हुआ है जिस पर एक बोतल और कैंची कुछ नेक सामान रखा हुआ है।

यह फोटो किसी जंगल से लिया गया--

यह फोटो किसी आइडिया कंपनी के ऑफिस से लिया गया है।

इसमें बहुत सारी औरतें और एक आदमी दिखाई दे--

बराबर मे एक बोगी खड़ी है जिसपर वाइट कलर की पॉलिथीन बिछी हुई है।

बराबर में एक बॉक्स भी रखा हुआ है जिस पर एक बोतल रखी हुई है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है और नीचे दो हाथ भी दिखाई दे रहा--

इसमें लंबी लाइन में बहुत सारी कुर्सियां बिछी हुई है।